एक औरत है ब-बच्चे के टी- शर्ट का कलर ग्रीन है--

और बच्चे ब्रिंजल कलर का ड्रेसेस पेन रहे हैं वो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं।